और यहां पर पांच शीशे लगे हुए हैं पेंटिंग लगी हुई है।

और एक रिक्शे वाला है जो आगे चल रा है।

यहां पर एक पार्किंग को दिखाया गया है। जहां पर नीचे गाड़ियां रखी हुई है।

और यहां पर पांच गाड़ियां पार्क की हुई है एक स्कूटी है।

जो बहुत अअ बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है।

स्टैचू जंगल के बीचों बीच लगाया हुआ है।

यहां पर एक पार्किंग को दिखाया गया है जहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहां पर आसपास गाड़ियां लगी हुई हैं नीचे पार्किंग है रोड है और ऊपर जाने के लिए एक गली दिखाई गई है।

जो गोल कलर के है जिनको एक टेबल के ऊपर रखा गया और ये दीवार है इनके पीछे एक दीवार है जो काफी पुरानी दीवार को दिखाया हुआ है।

और इसके साइड में लकड़ियां रखी हुई और रोड पे काफी सारी री--

और ये व्हाइट कलर की है और इसको अभी शो रूम के अंदर है।

जिसने ग्रीन कल कलर की टीशर्ट पहनी हुई है और--

यहां पर एक बिल्डिंग दिखाया गया है। जहां पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इसके आसपास छोटे-छोटे घरों को दिखाया गया है।

और टेबल के ऊपर सॉसीज चटनी--

जहां पर काफी सारी फाइल्ज रखी हुई हैं।

और एक बिल्डिंग है जिनका ब्राउन कलर है जिसके नीचे पार्किंग लगी हुई है।

जहां पर बैंक के बाहर बोर्ड लगा हुआ है इंडसइंड बैंक का जो रेड कलर से लिखा हुआ है और इसके बाहर एक पार्किंग है।

चिक वाशिंग मशीन दिखाई दे रहा हैं पर्दे दिखाई गए है।

बारिश लगी हुई है काफी सारी दुही छाई हुई है।

जो काफी बड़ी बिल्डिंग है आसपास पेड़ है।

जहां पर कुर्सी रखी हुई है टेबल रखे हुए है।

जगह को दिखाए हैं जहां पर काफी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं।

पानी इकट्ठे हुआ है जो यहां पर एक पेड़ है।

शिमला लिखा है एक ग्रीन कलर का बोर्ड है।

यहां पर एक रूम को दिखाया गया है जिसके अंदर--

लेडीज खड़ी हुई है जिसने पर्स लगाए हुए रखा है।

और यहां पर काफी सारी मशीनों को दिखाया गया है।

और यहां पर करेट है जिसके अंदर और भी खिलौने चोड़ियों के रंग--

यहां पर इंडियन रेलवे की एक रेल को दिखाया गया है ट्रेन को दिखाया गया है।

ब्लू कलर की है और जिसमें रेड कलर का लिखा हुआ है इंडियन रेलवे --

ब्राउन कलर का पेंट किया गया है और मंदिर का गेट अभी बंद है।